ये बिल्डिंग बनाने का अ कनेक्टिंग मटेरियलस है उसको बोल सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत डिजाइनस हैं।

एक बड़ा सा खेत है खेत के अंदर किसान खेती कर रहे हैं और एक बड़े से पेड़ को लगाने लगा रहे हैं मिट्टी उसपे डाल रहा हैं।

और इसके इसकी बिल्डिंग है ऊपर से एस्बेस्टर का और जो इसकी बिल्डिंग का कलर है आसमानी कलर है कुछ लोग सामने दिख रहे है जो दूसरे कलर में अ कपड़े पहने हुए है।

मंदिर है मंदिर के सामने एक लड़का खड़ा है और पीछे बोहोत ही खूबसूरत एक मंदिर है बोहोत सारे पेड़े पेड़ है ग्रीन दिख रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे सामान दिख रहे हे कुरकुरे चिप्स वगेरह सब दिख रहे हैं इसमें।